एक दूकान है यहाँ पे जिसको स्प्राइट पानी का बोतल माजा का बोतल --

यह बस है जिसमे बहुत लंबी-लंबी दुर-दुर तक बस जाती है ए.सी. का बस है।